बहुत लेंथ भी है और घर भी है साइड साइड में ब्लू ब्लू कॉलर का भी एक है आप तसवीर में देख सकते है --

और एक सीधा रास्ता भी जा रहा है और उसके साइड साइड में सजाने पर के लिए एक पौधे लगे हुए हैं छोटे-छोटे और साइड साइड में--

जब को दिख रहा है कि यहां पे तीन कार है।

जो मजदूर हैं जो एक जो घर बना रहे हैं बिल्डिंग बना रहे हैं जो आप समझिए इसमें साइड साइड में--

यहां पे सीढ़ियां भी आप देख सकते हैं।

कुछ इसमें कुछ सजे हुए हैं और यहां पे बस भी खड़ी है यहां पे बहुत गंदगी भी दिख रही है आपको पन्नी भी है।

इस तसवीर में देख सकते है कि ये एक चर्च है जो चर्च में काफ़ी सारे लॉयल्टी बच्चे बैठे हुए है जो डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा किया गया है पिंक और येलो ग्रीन में --